एक जगह काम वाली जगह है जहां पे सिमेन्ट और कंक्रीट का काम हो रहा है कुछ बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे कुछ दो ड्रम रखे हुए है और वहाँ पे एक महिला और कुछ व्यक्ति अ काम कर रहे है।

एक फोटो है जिसमें एक बहुत ही बड़ी मछली एक तख्त के ऊपर रखी हुई है।

उसके जस्ट बगल में एक जो कुटिया टाइप का बना हुआ है जहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इस गेट को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट गया है।